ये तो हावड़ा ब्रिज का फोटो है जी अ हावड़ा ब्रिज जो कलकत्ता में है ऐसे दिख रहा है।

पानी भरा होगा ये तलाब है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है हट छोटा -सा एकदम छोटा- सा तलाब है जी एकदम --

सैलून में न बड़ा -बड़ा आईना लगाना जरूरिच होता है जी इधर -उधर पूरा बाल देखने के लिए --

ये क्या लिखा हुआ है भाई प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है।

क्यूंकी देखो न बैलून वलून लगा है आ बैलून को छोड़ो जी गुब्बारे को छोड़ो देखो न इधर पूरा नया-नया पोस्टर उस्टर दिख रहा है।

छोटी सी दिख रही है समझ नहीं आ रहा है लेकिन मैं देख डाली या अच्छा छोटी सी चिड़िया भी बैठी हुई है यहाँ पे कर के --

ये क्या जी ये तो पंखा है हह कूलर का पंखा जैसा लग रहा है जी कूलर में रहते है न अइसे पंखा मतलब पंखा--

अच्छा नाम होगा दुकान का शायद तभी लिखा हुआ है ये हमको क्या--

ये क्या जी ये तो मैन रोड है बड़ा सा--

सड़क भी न गिला- गिला दिख रहा है होगा कहीं का --